जीसमें काफी सारे मेज कुर्सी लगी हुई है।

बी डी डब्ल्यू आर एल डी स्कूल का है।

यह एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है जो कि काफी बड़ा है।

यह एक फंक्शन की फोटो है।

भी लगी हुई है और पीछे एक छोटे छोटे पेड़ फूल झाड़ियां भी लगी हुई हैं।

जो की व्हाइट कलर के शेड की लगी हुई है।

तीन जेंट्स कुर्सी पर बैठे हुए हैं और एक लेडीज कुर्सी पर बैठी हुई है बीच में दो कुर्सी खाली पड़ी--

ये पीले रंग की और ब्लैक कलर किया हुआ है।

टी शर्ट और एक ब्लैक निक्कर डाली हुई है।

और साथ में जो गेट लगा हुआ है वह ऑरेंज कलर का--

और शर्ट्स भी लगी हुई नजर आ रही हैं जो कि अलग अलग कलर में पास में एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ है।

और इस कमरे की दीवारे जोकि वाइट कलर की है और दीवारों के--

और सामने एक पंप पर बोर्ड लगा हुआ नजर आ रहा है।

और वो ट्रैक्टर ट्रॉली में काफी हरे दिख रहें हैं ट्रैक्टर के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ हैं।

यह एक फंक्शन दिखाई दे रहा जिसमें काफी सारी डेकोरेशन की गई है और पास में मेज कुर्सी पड़ी हुई है।